यह काफी सुंदर और काफी स्पेसिफिक प्लेस है।

जहां पे बेंच और डेस्क लगे हुए जहां बच्चे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और यहां पे कुछ लड़के भी और कुछ लड़कियां भी जो अपनी यूनिफॉर्म में --

यहां पे कस्टमर आ के अपनी सर्विस ले सकते हैं यहां इसके छत पे काफी सुंदर सुंदर लाइटिंग्स लगे हुए--

इसके सामने भी घर है और कूड़े कचड़ो का ढेर--

यहां पर फूलों को सजा कर इसको और सुंदर बनाया--

यहां पर हमे इस पिक्चर में एक टेबल पे रखे दो तीन प्लेट्स को दिखाया गया है जिसमें जूठे खाने--